बहोत बढ़िया लग रहा है देखने में उधर जिसको मेज बोलते हैं दो मेस है बहोत लम्बा क्लास हो रहा है बहोत बढ़िया लग रहा है देखने में।

यहाँ पे जो हैं बहुत सारा विद्यार्थी हैं पढ़ रहा हैं एक लड़की जो है यहाँ पे सो रही हैं।

और इधर दो मोटर साइकिलवा इधर भी एक है और इधर एक आदमी जा रहा है इधर एक आदमी बैठा है।